च एक पेड़ दिखाई दे रहा है और एक सामने जंगला सा दिखा रे दे रहा है।

और यहां कुछ कलर दिखाई दे रहा है जो फिरोजी कलर हो रहा है घरों पे कुछ इंटीदार दिखाई दे रहा है कुछ सीढ़ी खड़ी है।

ये दोनों जेंट्स है और एक पीछे की साइड खड़ा है --

एक घर है घर में बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

वे जो व्हाइट कलर के कपड़े डाल रखे हैं उन्हें बराबर में दुपट्टा सा ओढ़ रखा है जो--

और रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं सामने कॉफी कलर का एक गेट दिखाई दे रहा है यहां पीछे हरे कलर की एक चादर सी दिखाई दे रही है कुछ--

और नीचे कितने सारे अह स्टील की ढोलिया सी रखी है।

यह जो पिंक कलर का है उसपे रेट है तीन सौ पचहत्तर जो ग्रीन से कलर का है उसपे रेट है तीन सौ पचपन।

वो जो नीले से कलर का है तीन सौ निन्यानबे रेट दिखाई दे रहा है और ग्रीन सा फिर दो सौ निन्यानबे दिखाई दे रहा पीले कलर के भी है।

और कितनी सारी पीछे हरियाली दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं पीछे ये एक कमरा बना हुआ है जो वाइट कलर के आउटलाइन हो रही है पीले कलर का कलर हो रहा--

ये दुकान दिखाई दे रही है जो एक काउंटर की उ तरह रखी है जालीदार गेट से लग रहे हैं एक कढाई रखी है ब्लैक कलर की ऊपर दो जेंट्स खड़े हैं।

और इधर एक कटोरी सी है उसमें चम्मच है चम्मच में खटाई से दिखाई दे रही है और मोमोस के भी डब्बे से रखें जिसमें--

और कटिंग सा हो रहा है जो दो दु दूसरा आदमी है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं जो अधिकतर लाल कलर के हैं।

और उस मैदान में पहाड़ से छोटे छोटे छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं पत्थरों के।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

दीवार के ऊपर गमले लगे हुए हैं उसमें पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और एक हिस्से में कोने में हरियाली दिखाई दे रही है उसमें पेटी रखी है एक बैग रखा है एक बॉटल सी रखी है।

और कितनी सारी झाड़ू भी रखी है कट्टे भी रखे है बराबर में एक पिलर सा है।

एक बहुत बड़ा शोरूम सा दिखाई दे रहा है और उनकी छत भी वाइट कलर की है जो पट्टियों से है एक बहुत बड़ा लाइट लगी हुई है पंखे भी लगे हुए हैं।

यह दुकान है परचून की उसपे कितनी सारी लड़ी के रूप में चिप्स चिप्स हैं शैंपू हैं कॉफी हैं।

चटनी है कुरकुरे हैं ये सब दिखाई दे रहे हैं। फोन पे भी चलाता है और उस मेज पे कितने सारे डब्बे रखे हुए हैं उनमें लॉलीपॉप टॉफियां ये दिखाई दे रही है और एक लड़का बैठा है उस लड़के के चेहरे पे पट्टी है।

एक मंदिर है अंदर एक गुंमद है। उसके नीचे तुरंत ठीक एक शिवजी सा बैठा हुआ है। मूर्ति रंग बिरंगी है।

और एक घंटा भी लगा हुआ है उसमें टाइम साढ़े सवा आठ बज रहे हैं।

और एक बराबर में एक पुल सा दिखाई दे रहा है उसपे चारों साइड स्टील की ग्रील लगी हुई है।

एक बहोत बड़ा ऊंचा हॉस्पिटल है उसपे पीला कलर हो रहा है और ए_सी भी लगी हुई है शांति मदन हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

एक लेडिस खड़ी है एक जेंट्स के चेहरे पे पट्टी लगी हुई है।

ऊपर छत है छत पे टेंट है झुंबर लगा हुआ है पीछे पर्दा नीला दिखाई दे रहा है।